यहाँ पर एक व्यक्ति बाल कटवाते हुए दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति उसके बाल काट रहा है सामने लक्ष्मी जी का पोस्टर दिखाई दे रहा है।